इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
लिबर ऑफिस impress का परिचय
impress में विविध toolbars
नई प्रस्तुति प्रज़ेन्टैशन कैसे तैयार करें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
यह microsoft office powerpoint के समतुल्य है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
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं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
कृपया इस website पर उपलब्ध लिनक्स उबंटु tutorials का अनुकरण करें और इस वेब suite पर दिए गए निर्देशों का अनुकरण करके लिबर ऑफिस suite download करें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
इंप्रेस विंडो में विविध टूलबार्स हैं जैसे– टाइटल बार मेन्यू बार
स्टैंडर्ड बार फॉर्मेटिंग बार और स्टेट्स बार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
from template पर click करें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
what is the subject of your presentation फील्ड में benefits of open source टाइप करें next पर क्लिक करें
यह step प्रस्तुति का वर्णन करता है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
वे प्रस्तुति के लिए सैम्पल headings हैं
create पर click करें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
file type में microsoft powerpoint चुनें
फाइल को सेव करने के लिए स्थान का चुनाव करें save बटन पर क्लिक करें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
file और open पर click करें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
file चुनें और open पर click करें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
pdf options dialog box में file और फिर export as pdf पर click करें export button पर सभी options को click करें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
impress में विविध toolbars
नई प्रस्तुति प्रज़ेन्टैशन कैसे तैयार करें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
इस व्यापक नियतकार्य का अभ्यास करें